एक साइकिल है। एक ओल्टो है। एगो ठेला है। ठेला पे बोहत कतकता आई। एगो लाइका पपीता बेचाइट ह। टेम्पू --

इ एगो दुकान में के फोटो हई ए में एगो बोल हई दू गो बोल बड़त हई तीन गो बोल बड़त हई एगो उना बड़त हई दू गो उने बड़त हई तीन गो उने बड़त हई।